लम्बा-लम्बा पेड़ सब है पीछे बादल दिख रहा है।

पीछे में बहुत सारा --

सब डांस कर री है ये बा--